एक नाव में दो व्यक्ति नाव का केवल एक भाग दिखाई नाव बड़े नदी में है।

प्रदर्शित किए इधर कपड़े के नीचे अअअ एक बड़ा कार्डबोर्ड का बास्केट भी दिखा रही है।

एयरटेल टेलीकॉम शोरूम का बाहर दुकान ग्राउंड फ्लोर में है रोड के किनारे।

इसमें एक चाय कॉफ़ी की दुकान है मेज और कुर्सियां वहाँ है पानी की बोटेल अ नमकीन --

एक मंच पर क्रिसमस फेस्टिवल --

अ एक सफ़ेद कलर की कार मारुती सुजुकी ब्रैंड का है ये कार अ एक ग्राउंड में खड़े हैं और रोड में नहीं।

हाँ ये एक बार्बर शॉप का अंदर अ इसमें तीन आदमी है एक कस्टमर है अअअ इसके रूफ में एक सीलिंग फेन भी है।

अ-और अन्य एक टेबल खाली है और उनका ऊपर सफेद हरा लाल नीला कलर का बलून भी है।

इस्म अ-अ सेंटर में एक बगीजा भी है।